ये एक सैलून का दुकान है इसमे तीन आद अ दो आदमी दिख रहे है अंदर बैठे एक आदमी का बाल बन रहा है।

ओर जुत्ता चप्पल परा हुआ एक आदमी बैठे भी हुए है पानी का बोतल है बैग है और पीछे झंडा लगा हुआ --

और यहाँ कई सारे आदमी आ बाहर में बैठे हुए है बाइक लगा हुआ हैऔर गेट खुला हुआ है। एक आदमी अंदर भी है।

और पीछे पेड़ है और बादल भी एकदम साफ दिख रहा है।

बगल में होटल भी है। ये एक सुपर मार्केट है। जैसे की सारा सामान यहाँ आपको मिल जाएगा। और बगल मे जलावन भी रखे हुए है।

और ये लकड़ी काबोम्बु खरा है बीच में और कुर्सी पे सारा सब्जी रखा हुआ है।

यह एक बुक की दुक आ दुकान है और यहाँ पे भगवान का पूजा हो रहा है।

और यहाँ पे ऊपर में पोस्टर वोस्टर भी लगा हुआ है और कई सारे लाइट भी जल रहे है और भीड़ बहुत ही जम के लगा हुआ है।

यहाँ देखिए कितना सारा आदमी है और यहाँ पे देखिए सब एक कितने आदमी के पे पौधे लगा रहे है।

और देखिए बगल में स्कूल है और यहाँ पे घर भी है और कई सारे कपड़े भी पसार रखे है।

और कई कलर के कपड़े भी लगे हुए--

देखिए यहा पे घर है। ओर घर क चारों साइड बहुत सारे लाइट लगे हुऐ है।